और इनमें तीन गाड़ियों का रंग काला है और एक गाड़ी का रंग नीला है।

इस दृश्य में हम लोग बहोत सारे लोगो को देख सकते हैं जो अलग अलग जगहों पे खड़े हैं और अलग अलग रंगों के मास्क पहने हुए है।

लाइटें जल रही हैं।

यहां पे एक व्यक्ति को देख सकते हैं जो बैग टांग करके है।

जिसका शर्ट का रंग सफेद है और हाथ में घड़ी पहना हुआ है।

ऊपर में भी कुछ लिखा हुआ है।

और पीले रंग से लिखा हुआ है बगल में घर है जिसका रंग सफेद है।

इस दृश्य में हम लोग बहुत सारे बाइक को देख सकते हैं जिनका कंपनी का नाम होंडा है।

उपर मे कुछ लिखा हुआ है जिसके अंदर लाइट जल रहा है।

और उनके पीछे दो बड़े बड़े इमारत दिखाई दे रहे हैं।

और उसमें भी बहुत सारे खिड़कियां का उपयोग किया गया है उसके पीछे पेड़ है।

वो उधर पीछे बहुत बड़े बड़े इमारत दिखाई दे रहे हैं जिसका रंग सफेद है और बड़े छोटे इमारत भी हैं।

ऊपर में एक चिड़िया उड़ रहा है।

के पीछे दो तीन गाड़ी लगी हुई है।

पीछे में बहुत सारी कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

इस दृश्य में सामने हम लोग--

कुर्सी देख सकते हैं जिसका रंग काला है।

नीचे में कैंची दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में हम लोग बहोत सारे गाड़ियों को देख सकते हैं।

कुछ का रंग काला है तो कुछ का रंग लाल है तो कुछ का रंग पीला है।

दूर दूर तक खाली पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और ऊपर में बहोत सारे तारे लगी हुई है।

लाल रंग के कपड़े चढ़ाए हुवे हैं।

बीच में एक पोल दिखाई दे रहा है।

अलग अलग रंगों की पर्दे चढ़ाई हुई है और बैलून भी दिखाई दे रही बहुत सारे।

के इसके ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ है।

नदी का किनारा का है।

सफेद बोरों के ऊपर रखे हुए हैं। पीछे में भूसा दिखाई दे रहा है।

कुर्सीयो का रंग भूरा है और टेबल का रंग भी भुरा है दीवाल का रंग हरा है।

.और जमीन का कलर लाल है दीवाल का कलर नीला है।

इस चित्र में हम एक बैनर को देख सकते हैं जिसके ऊपर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ है।

उसके पीछे बहोत सारे वो रखे हुए हैं समान।

एक गाड़ी को देख सकते हैं जिसका रंग हरा है।

एक आदमी बैठा हुआ है जो लिख रहा है कुछ कॉपी में।

इसपे दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

इनके आस पास में शीशे लगे हुए हैं।